लाल कलर और लीले कलर का मैट बिछा है और बोहोत सारे आदमी एक्सरसाइज कर रहे --

और इस दुकान में बहुत सारी टेबल और कुर्सी रखी हुई है।

इस चितर में एक बहुत बड़ी दुकान है।

और कुछ आदमी स्नान कर रहे हैं और कुछ बच्चे औरत भी स्नान कर रहे हैं।

और इस मंदिर में बहोत सारे फूल और गुब्बारे भी लगे हुए हैं।